फल का दुकान है और यहाँ नारंगी दिख रही है जोकि हरे और पीले कलर में है कुछ और यहाँ रेड कलर की एक अनार भी दिख रही है।

ये एक डी.इ.पि.टी. ऑफ़ पोस्ट इण्डिया | यंहा लेटर गिराने का काम होता है लेटर बॉक्स है| और ये ऑवर भी दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है| एक बंदा यहाँ बैठा भी हुआ है।

यहाँ एक घर बन रहा है और घर बनाने में ईंटा-उटा भी लगा हुआ है| सामने कई मिस्त्री काम भी कर रहा है।